देखिए बाहर कार भी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पर कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा है।

खिड़की भी दिखाई दे रही है खिड़की के बाहर कूलर रखा हुआ है यहां पर एक गेट भी दिखाई दे रहा है बेड के नीचे --

यह इमेज एक होटल की है इसमें बहुत सारी टेबल कुर्सियां दिखाई दे रही है कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे हैं एक औरत--

यहां पर कुछ लाइट्स लगी हुई है कुछ झूमर भी--

दो मंजिला इमारत और दिखाई दे रही है यहां पर एक पेड़ भी नज़र आ रहा है।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

इसमें टेबल कुर्सियां भी लगी हुई है टेबल पे कुछ सामान बेग और किताबें दिखाई दे रही है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं एक लाइट का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

यह इमेज एक नर्सरी की है इसमें गमलों में--